इहाँ ए एक शोरूम बानी | इहाँ दो जीप रखल बा | एक जीप सफ़ेद रंग के बा जो कछू के ऊपर रखले बा |

तीन मोटर साइकिल पर सीट नई बानी इमें दो पहिए बानी।

ई एगो हार्डवेयर की दुकान बानी।

बॉटल रखिल बा जी में अ आयल बानी इहां एक लैपटॉप रखल बा एक स्टूल रखल बा।

इहां बहुत सारे पम्पलेट छपत बा | इहां एगो सफ़ेद रंग की गाड़ी ध रखल बा।

ईहां बहुत ही शानदार स्टेज लगल बा।

ई बहुत सारी फूल बानी ई यहाँ कतई सफ़ेद रंग के परदे बानी।

लड़का बैएठत रही एक वेटर खड़ा बा।

यहाँ कछू माज़ा की बोतल रखल बा कछू इसप्राइट की बोतल बा कछू बिस्कुट रखल बा यहाँ पर |

यहाँ जाली लगल बानी | यह एक रिक्सा बानी |